और गया बुद्ध मंदिर के पास जा के दर्शन कर --

शुद्ध भोजन खाकर के लोग आनंद उठा रहे हैं यहाँ खाना अच्छा-अच्छा ढंग के बनता है और लोग खाते-पीते हैं ।

रंग-बिरंग के फूल लगे हुए है छिले हुए हैं।

बेच बिक रहे हैं राम-राम दवा का खरीद बिक्री अधिक हो रहा है।

यह टहलने का स्थान है बाग-बगीचे है सुन्दर फूल फल है।